वहां लेडिज लोग भी है बहुत सारे लोग हैं चर्च के बाहर लाइट में है।

पेंट बाजू में पेंट की दुकान भी हैं पेंट वेंट भी अच्छे मिलती हैं क्वालिटी के हर चीज़ अच्छी मिलती हैं यहाँ कि रोड़ा में।

वो लाइटिंग बहुत जोरदार है आदमी के लिए टाइल्स लगी है लकड़े का सेट आउट है।

स्कूल भी अच्छे यहाँ के टीचर लोग भी अच्छे दिख रहे हैं।

यहाँ एक बिल्डिंग है श्री गणेश करके गणेश मेडिकल और यहाँ।

जंगल तो बहुत खूबसूरत है बहुत अच्छे जिप्सी में बैठे हम लोग और हमसे चार पाँच गाइड ओर हे।

अब हम जा रहे हे शेर देखने हिरण शेर वगैरा अच्छा है ताड़ो का जंगल आप भी आइए घूमने फिरने यहाँ।

और यहाँ जो तुम घर की एक स्टैटस ना जैसा कोई शादी मे एक बैनर चिपकाना यह करना यहाँ सब बंनता है।

ऑटो का कलर ब्लैक पिंक और टायर का कलर तुमको पता कैसे ब्लैक है करके।

और वह लोग जो पिकनिक मनाने जाते हैं हम भी बस वही पिकनिक मनाने आये हैं हमने अपनी कार ।

अच्छे केक छे कॉफी की बर्गर सैंडविच छे कलर रूलर अच्छा तो लाईटिंग अच्छा है कैफै की।

ब्लैक कलर टी शर्ट हैं और वो लक्कड़ गरम होकर पूरा अंगार बनके बाहर निकल रही है।